यह एक फूल का दुकान है।

यह एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम नाना गंगोत्री कॉम्पिटेटिव एक्जाम कोचिंग सेंटर हैं।

इसमें नीचे नीले रंग का स्पर्श है।

आस पास में सभी पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

सामने सारे अचार के डिब्बे जुड़े हुए हैं।

और एक वहां पर बारबल उठा रहा है।

सीधे तरफ अह लॉकर रखा हुआ है।

के बाजू में साइकलिंग मशीन सब है।

और जिसके नीचे दो बड़े बड़े मूर्तियां हैं।

यह जिम में सारे इक्विपमेंट्स है।

और किताबें पढ़ रहे हैं।

यहां पर सभी लोग के सर पर टोपी बनी हुई है।

ये एक क्लासरूम है और जहां पर एक लड़का प्रेजेंटेशन दे रहा है।

और टीचर वहां बैठे बैठे हुए वो लेक्चर सुन रही है।

बाई तरफ एक कपड़ा लगा हुआ है।

रेस्टोरेंट में चार फ्रेम्स लगाए गए हैं।

यह एक बुक स्टोर है।

एक आदमी खड़ा हुआ एक फोटो खींच रहा है।

यह एक चिकन लेग पीस की प्लेट है।

हरी चटनी भी डाली गई है।

दाएं तरफ हरिमाई चश्मे वाले का दुकान है।

सामने गाड़ी खड़ी हुई है।

और यह पूरा डेकोरेशन से भरा हुआ है।